यहां पर बहोत बड़ी झाड़ियां लगी हुई हैं यहां पर और पहाड़ी इलाका है यहां सारे में पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक यहां पर बहोत बड़ा हॉल लगा हुआ हॉल है और यहां पर कुछ एंगील लगे हुए हैं और अंदर बाहर की तरफ रेलिंग लगी हुई है।

इधर सेंट भी रखे हैं और शैंपू टाइप शैंपू भी रखें है बहोत महंगी क्वालिटी के--

और दुकानें है यहां बहोत सारी और ये ऊपर दो मंजिला बना है सामने की तरफ दुकानों में बहोत सारे सफेद और हरे रंग के कट्टे भी रखे हुए हैं।

यहां एक पूरी जगह खाली है और यहां ग्राउंड टाइप का पड़ा हुआ है और यहां पे जो है यहां पे बहोत सारी गाड़ी खड़ी हुई हैं और कुछ एंबुलेंस खड़ी हैं वैन खड़ी हुई हैं।

स्प्रे रखा है और यहां क्रीम रखी है तोलिया रखी है मक्का रखा है और यहां हाथ होने के लिए सिंक बना रखी है और शिशा है सामने की तरफ।

यहां एक पिक्चर हॉल है और यहां पर जो है बहुत यहां पर तीन बहुत बहुत बड़े दरवाजे हैं और वहां पर शीशे लगे हैं।

और एक बहोत बड़ा तलाब टाइप का बना रखा है यहां पे पानी भरा हुआ है चारों तरफ से जाल लगा रखा है और यहां बहोत सारी औरते है।

रेड का अह बुटीक है अह ओ बुटीक एंड मे अह मेक अप स्टूडियो है यहां पे मेकअप स्टूडियो ।

किनारे किनारे पे और एक आदमी जो है अंदर जा रहा है और वहां पर बाईके भी खड़ी हुई हैं यहां पे गेट है और अंदर की तरफ यहां पे चैनल लगा हुआ है।

और नीचे उनके पेंट हो रखा है व्हाइट और अह रेड कलर से और यहां ले गमले भी रखे हैं पूरे के पूरे रेड कलर के पेंट हुए और उसमें पेड़ पौधे हैं।

एक झरना बह रहा है धीरे छोटा छोटा सा झरना है और वहां पानी बह रहा है और यहां पर जो है पानी इकट्ठा हो रहा है नदी टाइप की नीचे को जा रही है।

पड़ा हुआ है और मिस्त्री जो है यहां पर इसमें गोल को पूरे में जो मसाला है उसको पूरे में फैला फैला के लग रहे हैं।